अलमारी में बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं जो रंग बिरंगी है।

यहां पे लड़की दिखाई दे रही है जिसने पीले रंग की फ्रॉक पहन रखी है।

चाय की खिड़कियां लकड़ी की बनी हुई हैं दरवाजा भी खिड़की का बना दिखाई दे रहा है।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

यहां पे बाउंड्री मे बनी हुई है जो रंग बिरंगी ईंटों की है।

आगे दो तीन कार खड़ी है जो एक कार का ढक्कन खुला हुआ है।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कीबोर्ड और लैपटॉप रखा दिखाई दे रहा --

सुइट की दुकान है जिसमें बहुत सारी मिठाइयां रखी हैं।

इनमें बहुत सारी दुकाने हैं जो फूलों से सजी हुई हैं।